उस पहाड़ पर एक पानी का झरना भी दिखाई दे रहा है।

चारो तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है पेड़ काफी--

जैसा की देख पा रहे है एक बड़ा सा जिम दिखाई दे रहा है।

बादल दिखाई दे रहा है बादल सफेद दिखाई दे रहा एक--

में एक लड़का दिखाई दे रहा है लड़का जो कि अपने बॉडी को दिखाते हुए दिखाई दे रहा है।

खेत में ही एक मकान भी बना दिखाई दे रहा है।

मकान दो मंजिल का दिखाई दे रहा है मकान के सामने एक खम्बा लगा हुआ दिखाई दे रहा है खम्बे पर--

छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रही है।

और उनकी तीन से चार --

एल. ई. डी. लगी हुई दिखाई दे रही है और --

गाय चाप बनी हुई दिखाई दे रही है बड़ा-सा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा हैं।

छप्पड़ का बना हुआ दिखाई दे रहा है उस घर के सामने लकड़ी का गेट बन लगाया हुए दिखाई दे रहे है।